चिप्स के पॉकेट भी दिखाई दे रहे हैं सामने एक कांच की बनी हुई टेबल दिखाई दे रही है जिसपे कुछ फांकियों के डब्बे पड़े हुए हैं।

इससे तस्वीर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर गणेश भगवान की एक मूर्ति दिखाई दे रही है पास में मुझे एक --

इस तस्वीर में मुझे कुछ कार्टून दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर कुछ--

इनके पास में कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही है।

जिस पे एक प्लेट रखी हुई है।

और इस दुकान पे एक बड़ा सा पोस्टर ली दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ येलो कलर के नाम भी हैं विजय पुस्तक भंडार इस तरह का एक नाम भी दिखाई दे रहा है।

लकड़ियां भी दिखाई दे रही है पास में पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ मशीनें भी दिखाई दे रही हैं।